यह एक जीम क्लास का वीडियो का फोटो हैजो देखने में खूबसूरत है यहां पे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि जिम क्लास कर रहे --

पुल के बीचोंबीच नाव दी है जो देखने में खूबसूरत लग रहा है अच्छा लग रहा है।

यह एक मंदिर का फोटो है मंदिर में एक स्टैचू को बनाया गया है जो कि स्टैचू ब्लैक कलर का है।

यहां पे घिरावा किया गया है जो कि स्टील घिरावा किया गया है।

यह बच्चों लोग का डांस स्टेज शो है जो कि एक स्कूल के द्वारा कराया जा रहा है।

यह एक बस स्टैंड का फोटो है बस स्टैंड में बहुत सारे इंसान हैं यहां पे एक ऑटो लगा हुआ है जो कि माल धोने वाला ऑटो है।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

यहां पे एक लैपटॉप दिख रहा है लाइब्रेरी के ऊपर बुक है यहां पे ब्लू कलर का पर्दा लगाया गया है।

यहां पे बहुत सारे इंसान है जो कि ब्लैक कलर का सट पहने हुए हैं यहां पे एक लेडीज है।

यहां पे बहुत सारे अच्छा से सजाया गया जो देखने में खूबसूरत और अच्छा है।

यह एक फील्ड का फोटो है फील्ड के सामने एक टावर दिख रहा है एक बल्ब का टावर दिख रहा है जो देखने में खूबसूरत है यहां पे बहुत सारे फूल है।

बहुत सारे पेड़-पौधे हैं यहां पे खेलने वाले बच्चों को कूदने वाले लगाया गया है।

यहां पे बच्चों के लिए झुलुवा लगाया गया है जो देखने में अच्छा है।

इसके सामने सामने एक वाइट कलर का घर है यहां पे बहुत सारे हरे भरे खेड़ पेट पौधे हैं।

यह एक फील्ड का फोटो है फील्ड में बहुत सारे इंसान हैं इसमें पेड़-पौधे लगे हुए हैं इसके आगे पीछे बहुत सारे घर है यहां पे एक इंसान बैठा हुआ है।

यह एक नदी का फोटो है नदी के दोनों तरफ बहुत ही हरा भरा खेत है जो कि पेड़ पौधे जो देखने में खूबसूरत है नदी में पत्थर को रखा गया है।

यहाँ पे एक घर धलाई का काम चल रहा है घर धलाई के काम पर बहोत सारे लेबर जो कि काम कर रहे हैं यहाँ पे एक कार खड़ा रहा है जो कि वाइट कलर का कार है।

यह एक हॉल का फोटो है हॉल में बहुत सारे इंसान हैं जो देखने में खूबसूरत लग रहा है क्योंकि हॉल में पेरे पौधे को उगाया गया है।

यहां पे एक मजिल पर बहुत सारे इंसान हैजो कि रेड कलर लिखा गया है लाइव में।

यहां पे एक बुलडोजर हैजो कि बुलडोजर येलो कलर का है यहां पे खुदाई चल रहा है यहां पे तीन इंसान हैं जो कि दो इंसान वाइट कलर का जामा पहने हुआ है।

इसके आगे पीछे बहुत सारे पेर पौधे हैं जो देखने में --

यहां पे एक फूल का पेड़ लगाया गया है यहां पे वाइट कलर का बाउंड्रिंग

जो कि पार्क में टहल रहे है जो देखने में खूबसूरत और अच्छा लग रहा है।

यहां पे अलग-अलग प्रकार के पौधा लगाया गया है जो देखने में और भी खूबसूरत लग रहा है यहां पे एक पोल लगाया गया है।

यह एक छोटा सा पार्क का एरिया हैजहां पर बहुत सारे पेड़-पौधे को लगाया गया हैपेड़-पौधे को जाली से घेरा गया है।

कुछ इंसान खेल रहे है कुछ इंसान टहल रहे जो देखने मै और भी मज़ेदार खूबसूरत लग रहे है यहाँ पर आगे पीछे बहुत सारे पेड़ पोधे है।